और सामने ही एक सोफा लगा हुआ अंदर--

और यहां पे काफी सारे कपड़े टंगे हुए हैं गर्ल्स एंड बॉयस --

ये कोई स्थान हैजहां पे कोई भगवान रखे हुए हैं।

एक राधा कृष्ण भगवान की तस्वीर भी रखी हुई है।

और गोल बाले भी और सरिये वगैरह रखे हुए--

और बीच-बीच में स्टेन लाइट लगी हुई है।

यह कोई प्रसिद्ध काली मंदिर है जिसका दरवाजे के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

और अंदर ही कुछ टेबल ए पड़ी हुई हैंजो कि लोकभागों को बैठने के लिए--

ये एक बहुत प्यारी शॉफ है--

कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई है ऊपर काउंटर पे--

औ र भी काफी सारे आइटम नजर आ रहे हैं दीवालों पर काफी सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं।

और इसमें काफी सारी सुंदर- सुंदर लाइट लगी हुई हैं।

और यहां पे काफी सारे आइटम भी नजर आ रहे हैं।

और कुछ वर्णियों में भी कुछ सामान रखा हुआ है।

आप देख सकते हैं काफी सारे बच्चों के खिलौने नजर आ रहे हैं।

फूलों से सजाया गया पत्तों की डालियां लगाई गई हैं केलों की डालियां बड़े-बड़े --

यह एक स्कूल है बचपन प्ले स्कूल। --

और बच्चे और टीचर वगैरह या फिर पेरेंट्स वगैरह बाहर घूम रहे हैं।

यहां पे ए _सी फ्रिज सब चीजें सुधारी जाती हैं।

यह आप देख सकते हैं काफी सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति है।

और उनको पीछे मोर पंख लगाए गए हैं और काफ़ी प्यारे मुकुट वगैरह और हाथ में बंसी पकड़ के रखी --

और सामने ही कुछ कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं।

जो कि आप देख सकते हैंकाफी सुंदर इस पे चटाई भी बिछी हुई है।

और ऊपर सामने देख सकते हैंकि एक एज फैन भी लगा हुआ है।

और लोगभग फर्नीचर का काम कर रहे हैं।

और दरवाजे पे काफी प्यारे ऊपर नीचे हार्ड बनाए गए हैं और फूलों से सजाया गया है।

और यहां से वहां तक काफी सुंदर लाइटिंग भी की गई है और एक जेंट्स बाहर घूम रहा है।

और ऊपर भी लाइटिंग की गई है काफी खूबसूरत--

यह एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है रेसिंग ग्राउंड। --

इसमें लाइनें लाइनें बनी हुई हैं दौड़ने के लिए--

और ये क्या कुछ सुख चुकी है गर्मी का माहौल होगा तो।

और थोड़ा-थोड़ा पानी भी भरा हुआ है और पीछे यह काफी खूबसूरत हरा भरा पहाड़ नजर आ रहा है।

यही कोई काफी खूबसूरत एक चर्च है जिसको आप देख सकते हैं काफी सुंदर लाइटिंग होस है डेकोरेशन किया गया।

और कुछ लोग बाहर हैं कुछ लोग अंदर भी घूम रहे हुए हैं।

अंदर आप देख सकते हैं काफी सुंदर नजारा।

दिखाई दे रहा है कुछ गाड़ियां भी पार्क हैंऔर बाहर।

बॉक्सेस और बहुत सारी बोरियां भी रखी हुई हैं।

और सामने ही दुकान है जिसके सामने कुछ टंकी वगैरह रखी हुई हैं।

और यहीं पे पाइप वगेरा लगी हुए है पानी के लिए और काफी सुंदर फूल लगे हुए हैं छोटे-छोटे।

कुछ गमलों में भी पौधा लगे हुए हैं कुछ पौधे छोटी-छोटी पॉलीथिन में लगे हुए हैं।

काफी सुंदर बड़े-बड़े छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं।

और कुछ कमंडल वगैरह भी रखे हैंऔर साइड में ही।

ये एक काफी सुंदर दुकान है जिसमें--

और आप देख सकते हैंयहां पे एक कंप्यूटर रखा हैउसके पास पीसीओ रखा है।

ये कोई ऑफिस हैजिसमें आप देख सकते हैं ऊपर काफी सारे यह अवार्ड रखे हुए हैं।

और इसके बाहर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं।

और एक काउंटर बना हुआ है जिस पे--

रिसेप्शन वगैरह और यहां पे कुछ स्टूल रखे हुए हैंकाफी सुंदर।

और आधी-आधी दीवाल हैहो चुकी है।

यहां साइड में साफ देख सकते हैं कुछ डोरियाँ वगैरह भी टंगी हुई हैं।

ये एक काफी खूबसूरत स्टेज बना हुआ है।

काफी सारी मात्रा में नीचे स्टेज के नीचे काफी सारी मात्रा में लोग वहां खड़े हुए हैं और नजारा देख रहे हैं।

जिसमें साइडों में काफी प्यारे घाट बनी हुए हैं।

और घाट पे काफी सुंदर हरियाली भी है।

और एक घोड़ा घूम रहा है जोकी पानी पीने जा रहा है खड़ा हुआ है।

और इन लोगों के पीछे आप देख सकते हैं हाथ जोड़ के काफी सुंदर।

ये काफी बड़ा मकान है और जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारी।

और साइड में ही कुछ टालसों की दुकान भी है।

जिसमें लेटरिंग सीट दिखाई दे रही है और सामने एक।

और हॉल में काफी सुंदर लाइट लगाई गई है सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

जो कि गाड़ी चला रहा है बैठ के और।

बाहर ही एक वाइपर और बाल्टी रखी हुई है और पाइप घड़ी करके रखा हुआ है।

और पीछे आप देख सकते हैं रैकों में कुछ सूट वगैरह भी फैंसी सूट --

और मकान के ऊपर कुछ पानी इनकी टंकियां रखी हुई हैं।

इसमें काफी खूबसूरत रिबन लगाया गया और इसको किसी ने पकड़ के रखा हुआ है।

और कुछ बच्चे हैं जो कि काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

ये एक काफी बड़ी दुकान है संशन की।

प्रोडक्ट मिलते हैं जैसे फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन ये सब।